पर एक मोर बैठा है।

ये सड़क पर काफी व्हीकल्स खड़े हैं।

ज्वेलर्स की शॉप है।

ये बच्चे मस्जिद में--

एक चेयर पर वाटर की केनी रखी हुई--

बाहर गेट के भी काफी रस है।

इसके बाहर काफी लोग भी--

ये नर्सरी टू एट स्टैंडर्ड तक है।

ये बेस्ड ऑन सी_बी_एस_ई कुकूलम है।

जा रहा है जिसने सिर पर--

ये केक येलो कलर का हैं।

ये मार्केट का दृश्य है।

किन कुर्ता पजामा पेहेनकर खड़ा है।